बहुत सारे आदमी खड़े हैं कुछ कुर्सियों पे बै--

है कुछ आदमी बैठे हैं कुछ खड़े एक आदमी खड़ा है।

मम्मी है हरी भरी घास है।

देखते हैं बाहर शटर वगैरह लगे--

बहुत से पेड़-पौधे हैं हरी भरी घास है।

मोटर साइकिल है और--

बड़ी सी लंबी सी सड़क है इसमें एक रिक्शा खड़ा है।